हम देख सकते हैं यहां पर ऊंचे--

यहां किसी दफ्तर की तस्वीर लग रही है।

और उसी के बगल में तीन लाल रंग की कुर्सियां भी लगी हुई है।

नमस्कार दोस्तों यह तस्वीर किसी रेस्टोरेंट की लग रही है।

यहां ऑफिस के ऊपर बिल्कुल पांच गिलास भी इकठ्ठे रखे हुए हैं।

यहां एक कमरे के अंदर जाने का दरवाजा नजर आ रहा है।

यह तस्वीर किसी एरिया की लग रही है जहां पर मेंन रोड पर काफी भीड़ बाढ लग रहा है।

नाव पानी के बीच पर खड़ी हुई है।

यह झरना पहाड़ के ऊपर से होता हुआ इस पत्थर के ऊपर आकर गिर रहा है।

रेड और व्हाइट कलर के है इसको माली बिलकुल अच्छी तरीके से--

इस बस के पीछे ठीक इसका ड्राइवर खड़ा नजर आ रहा है।